यहां के लोहे का पिलर का सीढ़ी भी बनाया गया है।

यहां पे एक पानी बोतल भी दिखाई दे रहा है।

रूम में बहुत सारे लाइट भी लगाए गए हैं।

यहां पे बहुत सारे टेबुल और कुर्सी भी लगाया गया है।

यहां पे एक बाइक भी खड़ा है।

यहां पे बहुत सारे लेडीज और जेंस दिखाई दे रहे है।

टेबुल पे बहुत सारे सामान रखे गए हैं यहां पे एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे घर का चित्र दिया गया है।

घर में बहुत सारे लाइट भी लगाया गया है।

ग्राउंड में बहुत सारे घास हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक बड़ा सा लोहा का गेट भी दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर एक पोस्टर भी टांगा गया है।

यहां पे बहुत सारे लाइट भी लगाया गया है पंडाल का कलर व्हाइट और रेड दिखाई दे रहा है।

यहां पे कंक्रीट का चित्र दिया गया है।

एक व्यक्ति यहां पे टोपी भी पहने हुए हैं।

यहां पे एक जीप भी लगाया गया है जो कि ब्लैक कलर का है।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

यहां पे बहुत सारे पाइप भी रखे गए हैं यहां पे एक कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

एक बांस का डंडा में झंडा भी लगाया गया है।

यहां पे बहुत सारे पोस्टर भी टांगे हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बांस में झंडा भी टांगा हुआ दिखाई दे रहा है।